के सामने एक शेफ की फोटो है आ ऊपर देखिये बहोत सारे डिश की पिक्चर भी लगी हुई है इस साइड देखिये तो --

और देखिये रोड है जो बिल्कुल खाली है एक भी आदमी दिखाई नहीं दे रहा।

ये द सिटी कैफ़े है और देखिये ये ब्लैक कलर की ऊपर वाइट कलर की लिखी हुइ सिटी कैफ़े देखने में काफी अच्छी लग रही है |

और ये बहोत सारे लोग इस जिम में भाग ले रहे हैं।